एक बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरा घास जमा हुआ है और उस मैदान में ई सीमेंट का सीट रखा हुआ है ईंटें है अगल-बगल हरे पेड़-पौधे है।

घर का निर्माण ब कर रहे है और जो बहोत सारे डंडे लगे हुए है बांसों का और सैट्रिंगे लगी हुई है जों दो आदमी --